और यहां पर नीचे काफी सारा मटेरियल सामान पड़ा हुआ है।

यहां पर बाहर काफी सारी बाइक्स और व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहाँ पर सामने कुछ बॉक्स बने हुए हैं उनमें काफी सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर काफी सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहां पर एक रेलवे स्टेशन है और यहां पर सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है।

यहां पर सामने काफी सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहाँ पर काफी सारी कुर्सियाँ रखी हुई है काफी सारी मेज रखी हुई है।

यहां पर सामने एक मारुति सुजुकी की ऑथराइज्ड सर्विस है।

आसपास काफी सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं काफी हरियाली है।

कितने सारे गमले रखे हुए हैं और उनमें कितने सारे पौधे लगे हुए हैं।